इस चित्र में हमें एक तालाब नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक शादी हॉल दिखाई दे रहा है काफी सारी लाइटें लगी हुई हैं।

एक केबिन बना हुआ है जिसमें हमें काली कुर्सी दिख रही है।

इस चित्र में हमें एक मंदिर का टट दिखाई दे रहा है।

एक आदमी फुल पकड़कर खड़ा हुआ है।